इसी से एयरोप्लेन द्वारा यहाँ का फोटो घिचाता है। यहाँ का आसमान बहुत सुन्दर देखने में लगते हैं साफ़ और सुथरे अच्छे हैं यहाँ पर।

यहाँ पर बहोत मेला लगता हैआदमी आते हैअपना-अपना सब मन का बात कर के फिर जाते हैं |